और भी कई सारे चीजों में इसको उपयोग करते हैं।

यह पिक्चर आप देख के पता लगा सकते हैं कि यह शायद कोरोना काल के समय की है।

उसके साथ यहां पे पूरे तरीके से आप देखते हैं कि यहां पे पूरा खाना लगा हुआ है।

यहां पे ज्यादा पानी न हो के कम मात्रा में पानी है।

जहां पे आपको कई प्रकार के व्यक्ति नजर आ रहे होंगे।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे है होंगे आपको यहां पे।

उसके साथ बाहर की ओर देखते तो मौसम काफी सुहावना और लुभावना सा लग रहा है।

जहां पे एक ने पीले कलर की साड़ी पहनी है दूसरी ने हरे कलर की साड़ी पहनी है।

इसपे लिखा हुआ है बस्तर डेरी फार्म ।

नीचे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनमें से कुछ औरत और कुछ पुरुष हैं।

साथ में आगे की ओर देखते हैं तो यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

ऊपर की ओर देखते हैं तो यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जहां पे थाना लिखा हुआ है।

जैसे कि यहां पे आपको कुछ चुनरी की दुकान नजर आ रही होगी।

उसके साथ यहां पे और भी काफी सारे गुड्डे गुड़िया इत्यादि अन्य प्रकार के चीजें हैं।

उसके साथ यहां पे चार तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और आगे की ओर देखते हैं तो एक मछली को लेने के लिए व्यक्ति खड़ा हुआ है।

इधर आप सामने की ओर देखते है तो आपको गेट लगल नजर आ रहा है जो कि लाल रंग से पूरा पेंट है।

ये रॉयल कैफे यह पूरा सफेद कलर से है।

लव उ पूरा लाल से है।

उसके साथ यहां पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे गार्ड के बैठने का स्थान है।

जो कि आपको इस भीड़ में संघर्ष करते हुए नजर आते होंगे।

यहां पर देखते हैं कि यहां पर कुछ धूप बत्तियां जली हुई हैं।

दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं।

ऊपर की ओर ये एक माचिस की तीलियों जैसा कुछ बना हुआ है फव्वारे के ऊपर --

दो कपो में कॉफी रखी हुई है।

साथ में यहां पे दो चम्मच भी रखे हुए हैं।

ये एक लखनऊ का विश्व विद्यालय है।

अंदर की ओर काफी बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

उसके साथ एक ऑटो और दो बाइक हैं।

यहां पे आपको चारों तरफ अगर देखते हैं तो आपको यहां पे बच्चे नजर आ रहे होंगे।

उसके साथ ये वातावरण बहोत ही सुंदर और मनमोहक है।

साथ में कुछ बड़े भी कपड़े दिखाए जा रहे हैं।

जो पूरी सुंदरता के साथ वातावरण को घेरे हुए हैं।

और अगल बगल में यहां पे बाउंड्री है।

जैसे कि अपने आप देख सकते हैं कि एक घर बना हुआ है।

यहां पे हम अपनी दिनचर्या के तौर पर जितनी भी चीजें होती हैं उनको उपयोग करते हैं।

साथ में कुछ बिस्किट्स है नजर आ रहे होंगे उसके साथ ही आपको कई सारे खाने वाली चीजें नजर आ रही होंगी।

उसके साथ अगर आप पीछे की ओर देखते तो यहां पे एक मस्जिद है।

के साथ आपको यह रथ यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई नजर आ रही होगी।

जहां ऊपर पूरा टीन सेट रखा हुआ है।

इसके पास ही आपको एक दुकान नजर आ रही होगी।

यहां पे तनाएरा अ टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है।

और ऊपर की ओर यहां पे पर्दे से सजा हुआ है पूरा।

पीछे की ओर आप खुद देखते हैं तो यहां पे एक सफेद रंग की पट्टी लगी हुई है।

उससे बड़ी थोड़ी छोटी सीढ़ी है।

सभी लोग अं काफी ज्यादा काम पे अपनी मेहनत कर रहे हैं।

नीचे कुछ खाने का सामान रखा हुआ है।

पीछे की ओर देखते हैं तो वहां पे कुछ घर भी बने हुए हैं।